एक बड़ा कढ़ाई में एक कड़छुल है।

यहाँ पे जैसा कि मै देख सकता हु यहाँ पे मुझे--

पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है। बनारस पब्लिक स्कूल --

ए ब्लू कलर के हैं एंड कुछ रेड कलर के भी दिखा --

जहाँ पे मुझे हरे-हरे छोटे-छोटे बड़े-बड़े घा घास गाछ दिखाई दे रहें हैं जहाँ --

वाइट बोगा रंग का बैलून नील हरा रंग का बैलून और पीला रंग का बैलून से सजाया गया दिखाई दे रहा है। भगवान --